ना मसाले वगैरह जो पीसते हैं अपन उनके लिए दिए हुए येलो कलर का ये।

के पूरे कलर के बहुत कलर का स्कूल कलर किया हुआ है यहां पे पेड़ पौधे वगैरह भी--

यहां एक कपड़े की बहुत बड़ी शॉप है यहां पे बहुत सारे कपड़े अवेलेबल्स हैं यहां पे साड़ीज वगैरह लहंगे वगैरह।

कि गर्मी गर्म हवा बाहर फिर के अंदर हवा--

बास से बनी है इसके आसपास की दीवार है।

यहां पे पेड़ पौधे हैं घर बहुत प्यार बना हुआ बहुत पुराने टाइप का लग रहा बहुत खूबसूरत डिजाइन --

बाइक के पार्ट्स का शोरूम है यहां पे बाइक के काफी पार्ट्स रखे हुए हैं यह पूरा वाइट कलर से सारा कलर किया हुआ है रेड कलर के--

छोटे टायर बड़े टायर बहुत बड़े टायर सब यहां पे एक पिक है उसमें कार की पिक लगी हुई है यहां पे दीवार पे एक टू व्हीलर की पिक लगी हुई है।

यहां सुनसान रोड यहां पे अमृतसर हाईवे है जम्मू का--

यहां पे एक ट्रक जा रहा है और यहां एकढाबे का भी लोगो लगा हुआ है यहां पे एक साइकिल खड़ी हुई है एक दूर एक घर पे दो टंकियां रखीहुई है वाइट कलर --

एंड इसका नाम हैओल्ड कंबरोविच कस्टमइसे टेलरिंग .

फैब्रिक यहां पूरा उसका एड्रेस लिखा हुआ है बाहर रोड पे गाड़ी कार जा रही है सामनेसे--

एक डॉग का कुछ सर्जरी वगैरह कर रहे है।

लाइट फ्रोजी कलर की ड्रेस पेन रखी डॉक वाइट कलर का है जो कि लेटर --

डॉग का डॉक्टर उस डॉग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं।

यहां पे प्यारे-प्यारे फर्नीचर्स लगे हुए हैंजो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू .

पर भी है यहां पे जो कि उसकी मूर्ति टाइप बनी हुई है यहां पे काफी लोग इकट्ठा हुए--

यहां भी एक होटल का रूम है रेस्टोरेंट का रूम है।

आप दिख रही है यहां पे काफी न्यू न्यू टायर रखी है हर साइड केटायर--

और यहां पे दूर से भैया दिख रहे हैं जो कि ड्रग ट्राली जा रही है वहां पे एक लड़का खड़ा है शायद साइकल --

यह एक टूल की शॉप है जिस पे पावर टूल्स फॉर प्रोफेशनल्स के लिए काफी टूल्स वगैरह मिलते हैं जो हमें चीजों की जरूरत होती है रिपेयरिंग करने के लिए--

पूरा रूम बच्चों की चीजों से स्टिकेर्स से पूरा रूम डेकोरेट हैयहां पे दो पंखे हैं लाइट से--

इतना इंतजार कर रहे हैं कि वो भी विथड्रॉ करने जाए अंदर--

यहां एक शॉप है नेशनल पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर --

हर तरह के पाइप यहां पे बहुत कलर के पेंट्स अवेलेबल है हर टाइप के पेंट्स अवेलेबल है।

पिंक एंड ब्लू कलर की लाइट का इफेक्ट हो रहा है यहां पे काफी ज्यादा डेकोरेशन किया हुआ हैयहां पे--

कपड़ों की शॉप पे लेडीज का सामान मिलता है यहां पे लेडीज शॉप है जो कि यहां पे बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं यहां पे बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं।

बहुत कलर की यहां पे एक टेबल पर भी काफी ज्यादा कपड़े रखे हुए हैं यहां पे कैलकुलेटर वगैरह रखे हुए हैं लाइट्स के स्विच दिख रहे हैं लाइट जल रही है।

आटों की बहुत सारी कट्टियां येलो कलर का जिसमें बहुत सारे आटे पांच पांच किलो की ये--

अंदर काफी ज्यादा सामान लगा हैबहोत एक बेग --

इंटीरियर वाइट कलर से पेंट किया हुआ है यहां पे--

एक बहुत बड़ा सा हाल है यहां बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई है पर्दे--

एक जैसे पर्दे लगे हुए हैं पूरा वाइट इंटीरियर है यहां पे बहुत सारा चेयर्स लगी हुई है जो कि वाइट कलर की चेयर्स चेयर्स है उन पे येलो रिबंस बनी हुए है।

पूरा डेकोरेशन किया हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है।

बल्ब लगे हुए हैं येलो कलर के इतने खूबसूरत बल्ब है यहां पे पूरा कांच का शोक है।

यहां पे मजदूर होन हाइड कर रहे हैं उन्होंने सरिए वगैरह लगा दिए हैं पिलर होन बन चुकी है बहुत सारे मजदूर यहां पे काम कर रहे हैं।

भारी मात्रा में सरिए ही सरिए पड़े हुए सरियों का कारखाना है यहां पर सरिए बनते हैं।

उसके पास में भी एक शॉप है वहां पर भी सारी चीज अवेलेबल है डेरी मिल्क वगैरह ये सब मिलती है यहां पे और यहां पे एक और शॉप है जिस ब्लू कलर है प शॉप बंद ह यहां पे एक पेड़ है।

जो कि बीच में से ही रोड पे रोड पे पेड़ है बीच में से दिख रहा है।

नीचे से ग्रीन ग्रीन घास वगैरह भी दिख रही है इसमें पत्तियां जैसे डेकोरेशन करते हैं पत्तियों से ग्रीन --

फिर एक शॉप है जिसका नाम शिव शक्ति ट्रेडर्स है यहां पे--

हां बहुत सारी अलग-अलग शॉप्स है यहां पे एक शॉप्स है जिस पे लिखा आर महाजन सेल्स क्रॉप --

सीन्स नाइन टिन सेवेंटी फोर से ये सर्विस कर रहे हैं लोगों को सेवा कर रहे हैं यहां पे--

बहुत सारे बच्चों की छोटी-छोटी चेयर्स रखी हुई हैग्रीन कलर की जो कि बहुत प्यारी लग रही है बहुत--

एक्टिवा खड़ी हुई इसके आसपास भी काफी शॉप है मेन मार्केट है रोड पे शॉप है इनकी काफी ज्यादा शॉप्स --

यहां हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन लगे हुए हैं अपने नंबर के लिए काफी ज्यादा लोग यहां पे जमा हुए हैं।

यहां पे किसी समाज के धर्म गुरु बैठे हुए हैं आसपास--

आसपास जो बैठे उन्होंने येलो पे कलर का वेयर किया हुआ उनके गले में रेड कमछा एंड जो सब पीछे बैठे हुए बच्चे हैं उन्होंने सबने वाइट कलर के--

ड्रेस पूरे वेयर किए हुए हैं यहां पे डेकोरेशन है क्रिश्चियन समाज के लोग हैं सारे--

यहां पे ईंट की भट्टी है यहां पे बहुत सारी ईंट रखी हुई है वाइट कलर की एंड जो नॉर्मल कलर रहता है उस कलर में--

बहुत खूबसूरत लग रहा है यहां का व्यू यहां पे काफी ज्यादा मात्रा में--

और बहुत बड़ा रूम है यहां पे बहुत ज्यादा लंबे-लंबे--

गमला रखा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत--